लोगों की ऑफिस भी दिखाई दे रही है।

सोने के लिए बिछावन और तकिया रखे हुए हैं।

यहां पर योगा क्लास दिखाई दे रहा है लोग यहां पर योगा कर रहे हैं।

यहां पर शादी का महोत्सव दिख रहा है और ढेर सारे लोग भी यहां पर--

आए हुए हैं लड़का और लड़कियों पे आए हुए हैं बहुत सारे चेयर दिखाई दे रहे ।

यह एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसके आसपास--

जिसमें तीन कारें लगी है और यहां पर चेयर भी दिखाई दे रहे जिसमें एक गाड़ी--

की पूरी तरीके से निकाली गई --

सैंटा क्लॉस भी दिखाई दे रहा है जिसके नीचे एक व्यक्ति खड़े होकर--

और बेड पे तकिए भी लगे हैं जिसके आसपास ढेर सारे कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

समुद्र पानी से भरा हुआ है।

पढ़ने आते हैं और लाल कलर की --

यहां पर एक गाड़ी दिखाई दे रही है यह एक पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी हुई है।

यहां पर एक पार्टी के लिए सजावट दिखाई दे रहाजहां पे चेयर --

यह एक बुक सेंटर दिखाई दे रहे हैं जहां पर लोग किताब लेने आए हुए कैलेंडर कई प्रकार की--

किताबें भी यहां पे दिखाई दे रही है यहां पर एक पुरुष --

यहां पर एक स्कूल दिखाई दे रही है जिसका नाम मॉडल संत माइकल हाई स्कूल है जिसके आसपास--

यह एक गार्डन है जिसके आसपास पेड़ भी लगे हुए हैं और यहां पे ढेर सारे कपड़े भी पसारे गए --

यह एक स्विमिंग पूल है जिसके आसपास--

यह एक शॉप दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक व्यक्ति है और बाहर एक व्यक्ति खड़ा --

यह एक मीटिंग रूम की तरह दिखाई दे रही है जिसमें ढेर सारे चेयर --

सोफा लगी हुई है और टेबल भी लगी है बीच में एक पौधा भी रखा गया सजावट के लिए।

दुकान में लोग दिखाई दे --

यह एक उम्म यहां पर चेयर दिखाई दे रही है जहां पर क्लास --

और कई प्रकार की --

और उसके कई परिवार आपस में मेलजोल भी कर रहे हैं।

यहां पर एक पहाड़ पानी पत्थर दिखाई दे रहा है जिसमें--

यहां पर एक कमरा दिखाई दे रहा है।

टेबल चेयर भी दिखाई दे रहा है और लाइटें भी लगी हुई एक दरवाजा भी दिखाई दे --

आलू प्याज धनिया आदि सारी चीजें रखी गई है --

यूको बैंक यहां पर दिखाई दे रहा है जिसके आसपास बाइकें और कारें भी लगी --

यह छोटा सा एक पार्लर दिखाई दे रहा है जिसके आसपास--

चेयर भी दिखाई दे रहे हैं और यहां पर एक वॉल पर--

दो लोग फोटो ले रहे हैं और यहां पे पानी --

पेड़ पौधे हैं और --

डैम से बचने के लिए एक लोहा का --

ये एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जहां पे चेयर --

ए_सी भी लगा हुआ है और बैलून से अच्छे तरीके से सजाया भी गया है।

और यहां पे लाइट वगैरह भी दिखाई दे रहा --

और पुरुष डॉक्टर और एक महिला डॉक्टर दिखाई दे रही यहां पे टेबल चेयर भी लगी है।

लगा हुआ है चेयर टेबल भी यहां पर दिखाई दे रहा है और एक आईना भी --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

मेन चेयर भी रखे गए हैं और बोलने के लिए एक स्टेज भी बनाया गया है।

सेब संतरा दिखाई दे रहा है और यह --

सारे कागज कटे हुए कागज पर रखे हुए हैं।

के लिए दुकानें भी दिखाई दे रही और गाड़ी भी आसपास चलती दिखाई दे रही है।

यहां पर एक पोस्ट ऑफिस दिखाई दे रहा है जिसके बाहर एक व्यक्ति खड़ी है।

और यहां पर बाइक भी लगी हुई है और पेड़ भी दिखाई दे रही है।